यह एक जल प्रपात है और पानी इतनी उच्चाई से गिर रही है कि ये फेन का रूप ले लिया है।

आगे तरफ कुछ अ फूल --

यह एक बस है जिसमें जो खाली है यह एक संभवतः ए.सी. कोच है।

और एक आदमी है जो पैदल जा रहा है। उ वो सादे रंग का कमीज पहना हुआ है और जो बाइक में जा रहा है वो पेंट और --

यह काफी सुन्दर दृश्य है। ये रात्रि का प्रहर है और संभवत ये एक लॉज टाइप का है जो चार मंजिला है।

और एक लोग एक आदमी है एक फोटो खींच रहे हैं एक आदमी देख रहे हैं धन्यावाद।

ये न्यू स्टार सैलून है। जेंट्स सैलून है। यहाँ पे लोग आते हैं और बाल कटाते हैं।

और काफी ऊंचा स्मारक ऊंचा दृश्य --

को बनाए रखने के लिए कलाकृति को खेरने के लिए काफी मेहनत की गई है बिजली की भी उत्तम व्यवस्था बिजली का तार भी दिख रहा है।

इनको साफ़ सुथरा पानी की जरुरत है। ए संभवत --

टैम्पू है। ऑटो है। अ खड़ी है अ औ यहाँ पर --

और आम कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये एक फल का दूकान है।